बास से बना हुआ रखा गया है दौरी भी--

ये पहले फ्रिज ए_सी कूलर यहां ए_सी का दुकान--

क्योंकि ओ गर्मियों मे बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर किया जाता है।